जैसा कि यहां पर दिखाई पड़ रहा है इस फोटो में यह एक पार्क का फोटो है।

जैसा कि यहाँ पे फोटो में दिखाई पड़ रहा है कि यहां पे एक स्टेज बनाया जा रहा है।

यहां पे एक फोटो दिखाई पड़ रहा है जिसमें एक सैलून दिखाई पड़ रहा है। यह सैलून काफी लग्जरियस और स्टाइलिश दिखाई पड़ रहा है।

यह एक सैलून का फोटो है। यह सैलून लगता है कि नया-नया ही बना है क्योंकि सैलून में बोहोत सारे बैलून लगे हुए हैं।

जैसा कि यहां पे एक तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है कि एक लड़का यहाँ एक बड़े से चट्टान में बैठ करके फोटो खिंचवा रहा है।